इसमें सामने की गेट में डिजाइन बनी है और पीछे की दीवार भूरे रंग की है।

और पीछे की तरफ तालाब है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

तालाब के किनारे जमीन पे काफी सारे सफेद रंग की बत्तख बैठी हुई है।

उनके आसपास काफी सारे झंडे लगे हुए हैं जो की लाल और पीले रंग के हैं।